शादी के एक स्टेज का दृश्य जो किसी मेरिज हॉल में बुकिंग --

कमेटी सेंटर इसको कहते हैं। शादी के लिए ये बहुत अच्छा होता है।